बहोत बड़ी चीज है।

पिक्चर में यहां पर हमें दि--

रहा है यहां पर एक बहोत बड़ी बुक --

नजर आ रहा है यहां पर।